और आस पास पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

यह एक शॉप है इस शॉप में मुझे बहुत सारा समान दिख रहा है।

एल दिख रही है दो थमले दिख रहे हैं।

यह एक गोल्ड लोन बैंक है।

और दो बैठे हैं जिसने मास्क लगा रखा है।

पीछे पोस्टर लगा हुआ है जिस पर बॉडी बिल्ड का चित्र है।

यह एक इलेक्ट्रिकल शॉप है इस शॉप में मुझे एक घड़ी दिख रही है।

सफेद कलर के हैं कुछ ब्लैक के हैं।

और एक सामने बड़ा सा गेट दिख रहा है जिस पर--

यह एक स्कूल के बच्चे हैं जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी बेंच है।

और आस पास पेड़ पौधे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं।

और बाहर कुछ कुर्सियां धरी है मेज धरी हुई है।